हम छ टाइप का लिए है एक लोग बच्चे भी लिए है गुलाबी रंग के नीचे कुछ चेयर में इस टाइप का दिख रहा है पीछे भी --

सोफ़ा डिजायनर पीछे को फूल से अलग अलग डिजाइन के सजे हुए हैं। खूब रंग बिरंगे के फूल लगे हुए गुलाबी लाल--

फोर व्हीलर खड़े हैं ऊपर-पीछे मकान है मकान में खिड़कियाँ दिखाई दे रही है उसमें कत्थई-कत्थई का खिड़की में गेट लगा हुआ है।

और इस साइड में कुछ जाली वाले खिड़की दिखाई दे रहें कुछ लोग गाड़ी के बाहर खड़े पुलिस भी खड़ा है।

सफेद लाइट लगी हुई है लोहे का कुछ दिख रहा है।

कुर्सी दिखाई दे रही उस पे लाल-लाल चादर बिछा हुआ है एक बीच में बकेट के तरह दिखाई दे रहा उधर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ पर ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है सामने कार खड़ी है।

इधर एटीएम का पोस्टर लगा हुआ है।

अ कुर्सी एक लगा है एक अंदर भी कुर्सी लगा है सामने गेट की तरह दिखाई दे रहा है।

ये रोड पर रोड पर कुछ लोग जा रहे हैं कुछ बाइक से जा रहे हैं कुछ और --

बीच में एक मंदिर टाइप का फोटो बना हुआ है।

इस साइड भी कुछ दुकान है उस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं एक व्यक्ति बार बात कर रहे हैं।

यहाँ पर कुछ लड़कियाँ साइड में दो लोग कुछ उधर --

एक लोग पीछे खड़े हुए है टोटो के पीछे कुछ बैठे लोग है बीच में कुर्सी हैं मेज है।

हां जमीने दिखाई दे रही है इधर रेता दिखाई दे रहा है लाल बालू टाइप का लाल मिट्टी दो औरतें जा रही है पीछे कोई साइकिल से आ रहा है वो दो औरते टोकरी ली हुई हैं।

लिखा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है पीले रंग के दीवाल पे लाल --

लाल रंग से लोहे की खिड़कियाँ दिखाई दे रही है इसमें --

मुकुट है आधा बांसुरी लिए हुए हैं ऊपर --

और यह ऊपर सफेद कलर का रौशनी आ रहा है पीछे पर्दे लग रहे हैं।

एक साइड में कुछ एक महिला खड़ी है जो उन समानों को देख रही है कुछ बच्चे हैं जो मेज़ के उस साइड काम कर रहे हैं पीछे हरे रंग का दीवाल है गुलाबी रंग का दी --

एक स्कूटी भी दिख रहा है बाइक भी दिख रहा है --